दिखाए गए छवि में एक बहुत ही खूबसूरत झरना दिखाई दे रहा है।

झरने के एक पत्थर पर एक व्यक्ति झुका हुआ है।

स्कूल के बाहर एक बड़ा सा मैदान है जिस पर बहोत सारे लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

विद्यालय परिषद में बहोत सारे घास भी जमे हुए हैं।

दिखाए गए छवि में एक बहोत ही बड़ा झरना दिखाई दे रहा है।

झरने के आसपास बाहर से लोग नहा रहे हैं।

दुकान के बाहर बहोत सारे फल एवं सब्जियां है।

दुकान में बहुत सारी लेडिस वियर के समाने है।

दुकान में सफेद रंग की लाइट भी जल रही रही है।

बैग का आकार एवं रंग भिन्न भिन्न है।

दिखाए गए छवि में एक ट्रैक्टर का छवि दिखाया गया है।

दुकान के बाहर तीन बड़े बड़े साइन बोर्ड है जैसे बर्गर जे के लक्ष्मी प्रो सीमेंट एवं बांगड़ सीमेंट --

दिखाई गई छवि में एक छोटा सा दुकान ल दिखाया गया है।

आसपास दूर दूर तक बहोत बड़े बड़े खेत दिखाई दे रहे हैं एवं खेत के कुछ दूर पर बड़े बड़े इमारत भी दिखाई दे रहे हैं।

इमारतो के आसपास पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

डब्बों में डॉलर लिखा गया है।

अलमारियों में बहुत सारे कपड़े बने हुए हैं कुछ कपड़ों को प्लास्टिक के पन्नी में रखा गया है एवं कुछ को डब्बों में रखा गया है।

बेचो पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं एवं एक व्यक्ति सोया हुआ है।

लोगों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं।

रेलवे स्टेशन में एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जो कि पीले रंग का है।